साइड एक स्कूल है जो काफी बड़ा है उस के साइड मे जंगल है।

उन के भी सामने सीट है फ्रंट साइड--

बहुत सारा जंगल है पीछे काफी मात्रा में पेड़ पौधे हैं पीछे जंगल--